सुखी घास भी दिखाई पड़ रही है बहोत सारे खड़ंजे मिट्टी पड़ी हुई है।

यह एक जे_सी_बी दिखाई पड़ रही है जिसमे आगे की तरफ मशीन से खोदाई होती है।

यहां पे रोड के किनारे एक मंदिर बना हुआ है बहोत सारे घर बने हुए हैं।

जिसमें एक ड्रम ए_सी लगी हुई है नीचे की तरफ एक पहिया दिखाई पड़ रहा है।

एक चेयर पे टॉवल पड़ी हुई है और यहां पे काफी सारी बोतलें रखी हुई दिख।

कुछ पोस्टर लगे हुए हैं कुछ पर्दे भी पड़े हुए हैं। सोफे रखे हुए --